ये एक नदी जैसी दिख रही है।

ब्लैक और साइडोमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुएं हैं नीचे थोड़ा बहोत कच्चा जैसा भी दिख रहा है।

ये एक शॉप है जहां पर दीवार में कुछ बैनर जैसे लगाए हैं नीले रंग का बैनर है।

बुक का नाम है एस_एस वीवो बुक --

ये एक काउंटर जैसा दिख रहा है जोकि लिखा हुआ है वन प्लस टेन प्रो लिखा है।

क्रीम भी लगी हुईं है दो मोबाइल्स पड़े हुए दिख रहें हैं टेबल पर।

ये एक स्विमिंग पूल है जिसका पानी नीले रंग का दिख रहा है।

रेड कलर की चुन्नियां हैं फूल लगे हैं गुब्बारों से सजाया हुआ है।

कुछ चेयर पड़ी हैं टेबल पड़ा हुआ है।

टेबल रखा हुआ है जिसपे ब्लू रंग का कपड़ा चढ़ा है।

एक सामने बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

साइडो में जो दीवारें है व्हाइट कलर की हैं बीच में चरखी जैसा सर्कल सा बनाया हुआ है।

सामने एक कार भी खड़ी है और सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

दीवार पर साइडों में किनारो पर पिंक कलर का कलर किया हुआ है।